तीन-तीन नाईने और खंभे दिखाई दे रहै हैं और ब्रिज के उस तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रहै हैं नीचे शायद पानी सा लग रहा हैं।

भगवानों की मूर्ति भी बनी हुई हैं राम - सीता लक्ष्मण और इस तरह कुछ साधुओं जैसे दिख रहे है और उस तरफ --

और बच्चे भी है महिलाएँ भी है और नीचे की तरफ भी बच्चे है कोई परफॉर्मेंस हो रही है।

और एक आदमी बैठा हुआ है और टेबल पर कैंची रखी हुई है रजिस्टर रखा हुआ है केलकुलेटर भी रखा हुआ हैं।